यह एक गाड़ी की गैरेज हैं इस गैरेज में पुरानी गाड़ी को ठीक किया जाता हैं। यहाँ पे ख़राब गाड़ी को अच्छा करके देते हैं । यहाँ एक गाड़ी खड़ी है जो की अभी बंद पड़ी हैं ।

यह एक एस.बी.आई. बैंक हैं । इस बैंक के बाहर बहोत सारी गाड़ी खड़ी हैं । यहाँ बहोत सारे आदमी पैसे निकालने जमा करने आते है। यह बैंक में बहुत आदमी आए हुए हैं ।

डैम है जहाँ पे दो आदमी हाथ पकड़ के खड़े है पानी में यहाँ बहुत पानी है और उस पार बहुत पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यह एक ऑक्सफोर्ड पब्लिक इस स्कूल है। यह हमारे जमुई में है। इस स्कूल बहुत बड़ी है। इस स्कूल के ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है। यहाँ नीचे बस खड़ी है। यह स्कूल बोहोत बड़ी है।